उ यहाँ पर बहुत सारे टावर जैसे खम्बे लगे हुए है । जिसमे तार लगे हुईं है बोहोत सारी और बड़े बड़े खम्बे हैं जिसमे लाइट्स लगे हुए हैं।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें कुछ लिख रखा है नर्सिंग होम जैसा एक बाइक खड़ी हुई है व्हाइट कलर की बिल्डिंग है। जिसमे हरे रंग के पर्दे लग रखे हैं।

यह पे आगे तो नहीं दिख रहा है बट अस्पताल एवं भवानी अल्ट्रसाउन्ड सेंटर दिखाई दे रहा हैं।

जो कि वाइट के कॉम्बिनेशन पे बैनर बना हुआ है। नीचे जो गेट है वो लगी हुई है और उसपे वाइट कलर का कपड़ा बंधा हुआ है। ऊपर रेलिंग दिखाई दे रही है छत की।

और इधर एक एग्जस्ट मशीन लगी हुई है बंद है वो चल नी रही है अभी। वाइट कलर से नीचे पेंट हुआ है।

यहाँ पे फिसल पट्टी दिख रही है जो येल्लो रेड कलर की है बगल वाली रेड ब्लू है उसके बगल वाली ब्लू और येल्लो है | इसकी सीढियां हैं ग्रीन कलर की |